इस तस्वीर में मुझे एक रेस्टोरेंट टाइप का दिखाई दे रहा है जो की बहोत ही खूबसूरत है यहां पे--

इस तस्वीर में मुझे एक फूलों की दुकान दिखाई दे रही है जो कि काफी खूबसूरत लग रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ी सी दुकान दिख रही है जो साड़ी की है।

जोकि पैदल जा रहे है यहां पे कई सारे बिजली के खंभे है और बिजली के तारे है जोकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।

लाल कलर की बैलून और सफेद रंग की बैलून है और ब्लू रंग की बैलून है यहां पे मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जोकि काले कलर के कुर्ते में है और एक--

और कई सारी लाइटें जल रही है यहां पे एक बड़ा सा काउंटर भी रखा हुआ है।

और यहां पे कई सारी महिलाएं हैं जोकि छठ पूजा के लिए आई है।